ये स्कूटी मोटरसाइकिल है यहाँ पब्लिक ज्यादा आती जाती रहती है ये रास्ता काफी फेमस है यहाँ ये झोपड़ी भी है और ये रायगढ़ की काफी फेमस जगह है।

काफी अच्छे लगते हैं वैसे सभी को पसंद रहते है पैरोट को ये सब बोलते हैं तो और भी अच्छे लगते हैं ये घर में पाले जाते हैं कोई-कोई इनको पालता है कोई इनको पालता नहीं-- --

हेलो दोस्तों आप देख सकते हो जो काम चल रहा है जो कि यह मकान बन रहा है तो जिसका यह सीमेंट और गिट्टी वगैरा मिला के इसको मिक्स कर रहे हैं फिर इसको ये छत को बनाएंगे तो देख सकते हैं ये खड़े हैं नीचे तगाड़ी वगरह भी है।

अच्छा था ये तो अभी ऊपर का मकान रह गया बनने के लिए और सिर्फ एक ही रूम बना है क्योंकि नीचे गिट्टी वगैरा डली हुई है और इन सेन्टिग का काम चालू है सेन्टिग लगी हुई--